ए_टी_एम के साइड में एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक टेबल है जिसके ऊपर लाल रंग का जग रखा हुआ है।

तस्वीर में कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच बातचीत दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर दिन में लिया गया है।

कुछ लोग बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं।

यह फोटो दिन के टाइम खींची गई है इमारत की बाई ओर खिड़कियां और दाई ओर एक पोस्ट बॉक्स भी है।

एक व्यक्ति साइकिल ले के जाते हुए दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर पहाड़ी इलाके का प्रतीत होता है चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी गैरेज का लगता है।

यहां एक पीले रंग का इमारत देखा जा सकता है।

बारिश के कारण जमीन भीगी हुई है और पानी भी भरा हुआ है।

दीवारों का रंग पीला और नारंगी है।

इस तस्वीर में बहोत सारे बच्चे और महिलाएं दिख रहे हैं।

कुछ बच्चे खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं।

स्टेज के पीछे की सजावट महल जैसी लग रही--

सब लोग अच्छे कपड़े पहन कर इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं।

चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली फैली हुई दिख रही है।

नीचे कार्टून में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है।